सीलिंग के लिए व्हाइट कलर है ये दुकान व्हाइट कलर है।

ये पिक्चर में गेराज का तरह दिखाई दे रहा है साइड साइड में घर है पोस्टर लगाके है।

नारियल का पेड़ दिखाई दे रहा है साइड साइड में घर दिखाई दे रहा है टीना शेड दिखाई दे रहा है पेड़ दिखाई दे रहा है।

रोड के साइड साइड में घास ग्रीन ग्रीन से दिखाई दे रहे हैं बड़ा बड़ा पेड़लोग दिखाई दे रहे हैं रोड का साइड साइड में।

आसमान ब्लाइट व्हाइट कलर में दिखाई दे रही है ये ट्रक यलो कलर है।

और साइड साइड में घर दिखाई दे रहा ब्लू कलर का और आगे में रेड कलर है।

इस पिक्चर में दुकान दिखाई दे रहा है जहां पे बच्चा लोग का खिलौना रख के है।

बाइसिकल और डस्टबिन ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है अंदर में अंधेरा से बाहर में एक लड़का खड़ा है व्हाइट शर्ट पहन के ब्लैक पेंट पहन के--

ये पिक्चर में एक घर दिखाई दे रहा है जहां पे--

और राइट साइड में गाड़ी पार्क करके है व्हाइट कलर का।

पेड़ लोग दिखाई दे रहे ग्रीन ग्रीन से।

आगे में फ्लावर्स लोग दिखाई दे रहा है यलो पिंक रेड व्हाइट कलर का लोग।

इंसान लोग भी दिखाई दे रहे हैं नीचे में दुकान है ब्लू कलर का दरवाजा दिखाई दे रहे।

स्टेज है येलो कलर दिखाई दे रहे कारपेट रेड कलर बिछा के।

और साइड में एक फुटबॉल भी दिखाई दे रहा है और साइड में एक पैर दिखाई दे रहा है फूलटबॉल शू पहन के।

दरवाजा गारी का दरवाजा खोल के है दिग्गी खोल के है गारी दुला रही कार व्हाइट कलर है।

बाहर टीना दिखाई दे रहा है वाइट कलर में और पेड़ पेड़ दिखाई दे रहा है बाहर से।

ये पिक्चर में चर्च दिखाई दे रहा है वाइट कलर का।

राइट साइड मे एंगल लुक लगा के है क्रॉस दिखाई दे रहा है आसमान ब्लू कलर दिखाई दे रहा है।